कई सारे पोस्टर भी दिवालो पर लगे हुए हैं।

खेलने का मैदान है जिसमें दर्शाया गया है कि कई सारे व्यक्ति इस ग्राउंड पर खेल रहे हैं।

इसमें से एक कंबल है और एक टॉवल है और कुछ भी है।

और एक मार्ग जैसी संरचना बनी हुई है। यह संरचना बहुत ही अच्छी लग रही है।

और आस पास बहुत सारी हरियाली है।

एक माला सफेद है दूसरी माला पीली है और तीसरी माला गुलाबी है और चौथी माला--

काटो पे खड़ा है और एक कार भी खड़ी हुई है और एक मकान जैसा या फिर कोई कार्यालय बना हुआ है।